इस फोटो में नजर आ रहा है कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है काफी बड़ी चट्टान है जिस पर लोग स्टैंड के ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे है।

में कुछ वायर नजर आ रही हैं रेड ब्लेक कलर और रेड कलर कि पाइपिंग नजर आ रही है।

जे एक गाय की फोटो है जो गाय है वह ब्लैक और व्हाइट कलर की गाय है और इसके सामने एक टोकरी में --

जहाँ पे ये लड़का चाय को मतलब के उस दूकान का ओनर है जो चाय कस्टमर --

और इसमे एक बच्चा ने मास्क पहन रखा है।

यहाँ पे एक आदमी एक बच्चे की कटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है।

और दुकान काफी बढ़िया है येलो कलर के मतलब फूल वग़ैरा --

ये एक ऑफिस बैंक की फोटो हैं जिसमें काफी सारे कर्मचारी बाहर जाके और सामने एक स्टाफ मेंबर दिखाई दे रहा हैं।